ये जो है एक सैलून है सैलून की पिक है।

सोलर सिस्टमस लगे हुए है नौ सोलर सिस्टम जो है।

उस दरवाजे के जो ऊपर हैं। वहां एक बोर्ड लगा हुआ है वो है।

यहां पे जो है ट्रॉलीज जो है बाहर रखी हुई है बहुत सारे ट्रॉलीज है सामने जो है गेट पे भैया खड़े हैं चेकिंग के लिए।

दो टेबल्स है और चेयर्स लगी हुई हैं।

मिल्क केक ये सारी मिठाइयां जो है वो रखी हैं और इनका प्राइस सबका अलग अलग--

मग रखे हुए हैं और माथा टेकने के लिए संदूर है वहां पे--

लड़कियां जो है वो रूम में बैठ के अपना-अपना स्टडी कर रही हैं।

ये एक शॉप है शॉप के अंदर एक डेमो पीस होता है जो--

तस्वीरें यहां पे जो ऊपर फैन लगे हुए हैं पीछे एक छोटी सी अलमारी र बनी हुई हैं।

साइड साइड में जो है उसके टेबल्स के चेयर्स रखे हुए हैं वहां पे एक दवा--